आह पब्लिक बैठी हैं कुछ बेंचएस हैं बाहर का वातावरण अच्छा है पेड़ है हरे-हरे--

ये गोडाउन है। वहां पे टी_वी फ्रिज पंखे वाशिंग मशीन ए_सी --

यहाँ पे एक शॉप हैं वहां पे स्टेशनरी सामान रखा हैं शैम्पू रखे हैं।

साइड में साइकिल टू व्हीलर वगैरह खड़ी है।

वॉल को अच्छी अच्छी फोटो लगी है।

वो केक के साइड मे व्हाइट कलर के सिल्वर कलर के पेंट लगा हुआ हे।

आगे मे एक ऑरेंज कलर की बिल्डिंग हे वहां।

आगे मे एक हॉल है ऐसा लग रहा है कि एक रेस्टोरेंट हे।

वह चार डाइनिंग टेबल रखी हुई हैं हर डाइनिंग टेबल पे चार चार कुर्सियां हैं।

और रेस्टोरेंट को आगे में खिड़की है वहां मस्त कलर कलर की लाइनिंग है।

आगे मे एक ग्राउंड है ऐसा लग रहा है कि ये सब पार्किंग है वहा बसेस ट्रक खड़े हुए है।

और ट्रकों के पीछे में एक नीले कलर का गोडाउन है वहां एक लाइट के लिए खंबा है।

व्वा मस्त अच्छे कलर कलर का मार्बल और टाइल्स लगी हुई है।